और यहां बहुत ही अच्छे-अच्छे फर्नीचर बनाया जाते हैं जैसे कि आप ये देख ही सकते हैं।

जो कि पेंटिंग से दिया जा रहा है इसको एक तरह से आप बोल सकते है फाउंडेशन किया जा रहा है फेस का।